यहाँ पर बहुत सुंन्दर पार्क है इस पार्क में एक मशीन लगा हुआ है और हरी-हरी घास भी हैं और यहाँ पे आदमी --

यहाँ पर एक रेलवे लाइन है। उस रेलवे लाइन पर एक ट्रैन खड़ा है। वो ब्लू कलर का है। वहाँ सड़क भी दिखाई दे रहा --

ये झील नदी है ये झील नदी --

यहाँ पर मकान बन रहा है इस मकान में बहुत मजदूर लोग खट रहे है उस मजदूर लोग को पैसा भी मिलते है।

शटर गिराया हुआ है | वहाँ पर एक आदमी लाल कलर का कपड़ा पहेने बैठा हुआ है | वहाँ पर एक गाड़ी भी लगी --